यहाँ पे पटरियों पे बहोत सारी गिट्टी भी नजर आ रही है और एक ट्रेन --

लड़के के बाल में कुछ क्लिप लगे हुए हैं। लड़के ने एक --

काले रंग के कपड़े को ओढ़ रखा है। लड़की के सामने एक --

जिसके ऊपर नीले रंग से गिंदो देवी महिला विद्यालय --

मूर्ति के किनारे कुछ कलाकृतियां भी बनाई गई हैं।

मंदिर की ऊपरी सतह पर सुनहरे रंग से डिजाइन बनाई गई है।

मेज के ऊपर छोटे-छोटे गुलदस्ते भी रखे गए हैं।